बहोत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पंखा भी लगा हुआ है।

करते होंगे और यहाँ पे लाके लगा दिए है। इस यहाँ पे और फोर व्हीलर भी जा सकता है। इसका लग रहा है और यहाँ भी लिखा हुआ --

जो कि पतझड़ का --